यहाँ महजिद में सुबह-शाम ऐलान दिया जाता --

नदी है यह नदी में पुल बनी हुई है यह नदी में पानी है बहुत सारे बालू है यहाँ पे ट्रैक्टर से बालू ले जाने के लिए लोग आते हैं और घर बनाने में बालू की काम आता है ।

यह मछली है यह मछली बहुत सारी है | यह बहुत ही ताजी मछली है | इस मछली को मछवारे बेचने के लिए लाये हुए हैं | यह मछली बहुत ही बड़ा बड़ा है यह मछली लोग खरीदने के लिए आए हुयें हैं ।

दुकान है यह दुकान में एक बैंक भी है यहाँ पे एस.बी.आई. बैंक है यह भारतीय स्टेट बैंक है यहाँ लखीसराय शाखा है यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं ।